हरा-भरा सा दिख रहा हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा हैं।

हर गानो पे धून बजाया जा सकता है ये --

चलिए बहुत ही अच्छा होता है।

और इनके छत में जो हॉल बनाया हुआ है वो बहोत ही अच्छा दिख रहा है ।

और ये व्हाइट कलर के जो राउंड किए गए है ।

इसमें कुछ चटनी रखे गऐ हैं और --

अंदर मे बहुत सारा --